यहां एक बहुत बड़ा घर दिख रहा है जो कि सफेद रंग का है।

यहां एक भंडारा होते हुए दिख रहा है जिसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और एक भैया खाना परोसते हुए दिख रहे हैं।

और बहुत सारे लोग दिख रहे हैं और एक स्टैंड बना हुआ है पीओ का।

जहां रंगोली के चारों ओर यहां ल ये लोग दिए रख रहे हैं।

और साइड में चटनी और दही रखी हुई भी दिखाई दे रही है।

ये बहुत बड़ा समुद्र दिखाई दे रहा है जिसके साइड में एक पिलर भी दिखाई दे रहा है।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

और पीछे फूलों से डेकोरेशन भी किया गया है जो कि अच्छा लग रहा है।

यहां एक मूर्ति दिखाइ दे रही है जो की लॉर्ड बुद्ध की है।

जिन्होंने गमछा पहना हुआ है और पीछे की ओर एक दीवार भी दिखाई दे रही है गॉड बुद्ध भी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह एक ट्रैक्टर दिखाई दे रहा है ट्रैक्टर जोकि नया है।

उसके ऊपर विश्वास फोर थ्री फाइव लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां एक बहुत पुराना था जनरेटर रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

सामने की ओर उनका टीचर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है।

जिसमें राम जी लक्ष्मण जी और सीता माता है दिख रही हैं।

और सामने कि वो दो तीन व्यक्ति खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

जिसमे नारियल और केला संतरा वगैरह रखा हुआ भी दिखाई दे रहा है।

प्रकार का बया तू मशीनें लगी हुई हैं और साइड में स्विच लगी हुई हैं।

एक गार्डन दिख रहा है जिसमें पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

बिल्डिंग के सामने की ओर एक पेड़ दिखाई दे रहा है और दूसरी साइड पे पौधे दिखाई दे रहे हैं।

जिसके दूसरी साइड एक रास्ता जाता हुआ दिख रहा है।

और ऊपर एंगल से बने लोहे के एंगल से बना हुआ ढांचा भी तैयार किया गया है।

सामने की ओर एक अअ घर दिखाई दे रहा है।

यहां एक बहोत बड़ा पेड़ पौधों वाला प्लांट लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

इसमें एक बहुत बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है जो कि हरे कलर का है उसके ऊपर पिंक कलर के डिजाइन बने हुए हैं।

गाड़ी का इंजन खोलकर ले जाने की कोशिश कर रहे है।

इसमें बहुत सारी दरारें वगैरा पड़ी हुई है बहुत पुराना लग रहा है।

और नीचे की ओर घास भी दिख रही है और पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं।

यह एक दुकान दिखाई दे रही है जिसमें आर्टिफिशियल गमले रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

पास एक रोड के साइड में रेता भी पड़ा हुआ दिख रहा है।